कुछ दुवा है और ए कुछ पानी के फुब्बारे चल रहे हैं और नीला आसमान है।

और इसका बोनट खुला हुआ है।